इसमें बहोत सारी कुकर दिख रहे हैं प्लेट दिख रही है कटोरी दिख रही है।

दीवार सफेद कलर की है।

बिल्डिंग व्हाइट कलर की बनी हुई है।

कुछ ना कुछ बिछा रखा है नीले कलर का।

हरे हरे पेड़ है बड़ा सा और कुछ लोग दूर भी खड़े--

यहां भैंस दिख रही है गाए दिख रही है।